यहाँ पे कितना सामान है। सभी सामान यहाँ पे बिकता है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा देखने में लग रहा है और यहाँ पे आप लोग देख ही --

और यहाँ पे देख सकते है कितना अच्छा देखने में लग रहा है ये रेस्ट्रोरेंट यहाँ पे आप लोग आके खाना-वाना खा सकते है और ये बहुत सुंदर रेस्ट्रोरेंट है ।.

यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की ये भईया यहाँ पे सब स्टेशनरी शोप का दुकान खोले हैं यहाँ पे देख सकते है पेन - वेन यहाँ पे कोपी - किताब कलम सब यहाँ पे बिक रहा।

और उनका गाड़ी भी नीचे लगा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ पे लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग --